जिसमें बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं इसमें दूर दूर तक पानी है साइड में छोटा सा ग्राउंड है उसमें गाड़ियां लगी हुई है।

ये किसी पहाड़ों का दृश्य लगता है।

यह एक बिल्डिंग है जिसपे अभी काम चला है।

तारे हैं बिजली के खंभे हैं।